और लेडिस है रेड कलर का सूट पहना हुआ है | इसमें स्प्राइट मिलता है कोको कोला मिलता है ।

बगान है उसमे वेलकम लिखा हुआ है | बहुत सारे गमले हैं | उसमे --

उजाला कलर का है टैम्पू में तीन चक्का हैं बस में चार चक्का हैं।

स्काई कलर शर्ट पहना हुआ है ब्लू कलर गंजी पहना हुआ है और स्काई कलर शर्ट और ब्लू कलर पैंट पहना हुआ है ।

एक मैडम है | उ बच्चे को सीखा रहे हैं रेड कलर का साड़ी पहना हुआ है पीछे वृक्ष है हरे भरे |